यह एक ऑफिस है ऑफिस मे अलग-अलग काउंटर छटे हुए है वह बहुत से कम्पुटर रखे हुए है।

बहोत सारे फ़ाइल रखी हुई है और इनमें कुच्छ कागज भी रखे हुए है लाइट जल रही है पंखा चल

हमे यहाँ एक एक पक्षी है यहाँ ब्लॅक कलर का है और यहाँ अगल बगल पत्ते है घास उग रही है।

केक रखे हुए है दो केक रखे हुए है और के के पीले कलर का है।